यहाँ पे एक आदमी है जो कि गाड़ी पे बैठा हुआ है काला पेंट पहना हुआ है सफ़ेद शर्ट पहना है हेलमेट नीले रंग की लगाई है रोड़ के अगल बगल डब्बे गिरे है कुछ कुरकुरों के पैकेट गिरे है कुछ गाड़ी खड़ी है एक आदमी दस्ताने लगा के चला रहा है।

अगल-बगल दीवार है जिनमे चित्र बनाये गए हैं। कलर पेंट से ऊपर की तरफ पर्पल रंग का सामान दिख रहा काले रंग का हैं। बगल में एक लोहे की गेट हैं।

यहाँ पर बहोत सारी महिलाएं हैं जो की शॉल ओढ़ी हुई है कुछ बच्चियां है कुछ छोटे है कुछ पुरुष है कुछ महिलाएं है।

पंखे लगे हुई है ट्यूबलाइट्स लगी है एसी लगी हुई है। नीचे फर्श भूरे रंग की है कुछ लोग सफ़ेद कपड़े पहने हैं कुछ लोग लाल कुछ लोग पील --

कुछ कपड़े निचे झूल रहें हैं निचे लोहे के एंगल लगी हुई है मोती आसमान सफेद दिख रहा है कही पे काला अगल बगल पेड़-पौधे दिख रहें हैं जो की काले रंग के दिख रहें हैं निचे परछाई दिख रही है ब्रिज के निचे एक अ हरी पानी दिख रही है।

घर है जिसमें आसमानी रंग से कलर किया गया है गेट लगा हुआ है उसमें कत्थे कलर की पेड़ पोधे हरे दिख रहे है पानी भारी हूई है बगल में कहीं पे हरी घास उगी हुई है पानी में परछाई दिख आसमान काला दिख रहा है और यहाँ पर संतरे रंग के कचरे है कुछ पन्ने हैं कुछ गी सीढ़ी --

पानी भरी हुई है। पेड़ पौधे हरे हैं छोटे बड़े दिख रहे हैं कपड़े सूख रहे हैं जो की नीले संतरे रंग के दिख रहे हैं कहीं पे हरे पानी में परछाई दिख रही --

उसका कलर उड़ गयइ है नीचे हरी घांस है भूरी मिट्टी है रास्ता है आसमान सफ़ेद साफ है। घर के ऊपर सिंटेक्स रखी हुई है काले रंग की नीचे हरी घांस पेड़-पौधे दिख रहे हैं।

खम्बे हैं काफी बड़े कहीं पे भूरा रंग पुता हुआ है कहीं पे काला रंग काँच की खिडकियाँ हैं ऊपर सिंटेक्स है। यह चित्र बहोत सुंदर दिख रहा है।

एक स्कूटी काले रंग की दिख रही है आसमान सफेद है तार गई हुई है। एक ठो साइकिल दिख रही है बत्ती वाला --